फोटो के अंदर एक बड़ी सी दुकान दिखाई गई है।

और एक पानी का टप रखा हुआ है सामने की तरफ एक लड़का बैठा हुआ है ऊपर पंखे लगे हुए हैं।

और एक बैनर लगा हुआ है जिसपर शाकुंभरी नेत्र चिकित्सालय हिंदी में लिखा हुआ है।

और सामने एक दुकान और है जिसमें छोटा शटर लगा हुआ है।

और इसके ऊपर दो बैनर लगे हुए हैं सामने की तरफ एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा है।

बिल्डिंग की साइड में कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ खड़ी हुई है।

साइडों में कुछ पाइप खड़े हैं जिन पर जाल लगा हुआ है।

पीछे की तरफ कुछ पेड़ है जो बड़े पेड़ बड़े हैं कुछ छोटे हैं और नीचे झाड़ बने हुए हैं।

और एक तखत पड़ा है और एक स्टूल पड़ा हुआ है।

इस पर इ_सी बावन सौ पचास लिखा हुआ है।

जिसपे से एक बच्चा फिसल रहा है और नीचे कुछ लड़कियां बैठी हुई है छोटी छोटी।

कुछ कुर्सियों पर सफेद कपड़ा ढका हुआ है कुछ पे लाल कपड़ा ढका हुआ है।

और सामने की तरफ कुछ व्यक्ति चलकर दिखाई दे रहे हैं।

पीले कलर की शर्ट पहनी हुई जींस पहनी हुई है।

और कुछ झाड़ियां खड़ी हैं और कुछ पेड़ खड़े हैं।

कुछ छोटे छोटे खंभे दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक रोड है सामने--

इसमें एक दुकान बनी हुई है उसकी टीन की दी छत है।

इस फोटो में एक बड़ा सा मंच दिखाया गया है।

नीचे कि तरफ काउंटर पर एक पोस्टर लगा है जिसपर फॉर द वेरी बेस्ट स्टार्ट इन लाइफ लिखा हुआ है साइड में एक लड़का दिखाई दे रहा है।

और नीचे सैमसंग लिखा हुआ है कुछ रैक बनी हुई है।

और ऊपर छत पर कुछ लाइटे लटकी हुई हैं जो जल रही हैं।

इस फोटो के अंदर एक दुकान दिखाई गई है जिसमें सामने की तरफ एक लोहे की रैक बनी हुई है जिसमें नीचे कुछ पैकेटस रखे हुए हैं।

इसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं कुछ औरतें हैं कुछ आदमी हैं।

और एक दीवार बनी जिस पर आदमी बैठे हुए हैं और नीचे छोटी छोटी खास खड़ी हुई है।

एक लड़का खड़ा है जिसने जर्सी पहनी हुई है।

और कुछ सामान रखा हुआ है कैंची वगैरा रखे हुए हैं।

और एक पाइप दिखाई दे रहा है जो कि पानी का पाइप है एक कुर्सी पड़ी है।

नीला कलर है इनमें सफेद कलर की टंकी रखी हुई है।

जिनमें कुछ सामान रखा हुआ है और पीछे एक और टैंक रखा हुआ है।

इनमें पौधे लगे हैं और साइडों में छोटी छोटी घास है।

कि तरफ कुछ काले कलर के पर्दे हैं पीछे एक छोटा सा टेबल रखा है जिसके ऊपर एक बाल्टी रखी हुई है।

और जिसमें कुछ फूल लगे हुए हैं।

और एक बिजली का खंभा खड़ा है और उसके पीछे एक पेड़ खड़ा हुआ है।

बड़ा सा मंदिर है उसकी साइडों में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक सामने बेड दिखाया गया है नीचे सफेद कलर है।

खिड़की है और इनमें भी शीशा लगा हुआ है।

और पीछे की तरफ एक बड़ा सा है ट्रंक रखा हुआ है।

और पीछे की तरफ एक दीवार है जिस पर कुछ डिब्बे रखे हुए हैं।

इस फोटो के अंदर कुछ कार खड़ी हैं जो सफेद कलर की हैं।

और इसमें रस्सियां बानी जो हुई सफेद कलर की है। सामने ऊपर कुछ छाते लगे हुए हैं जि अलग अलग कलर के हैं।

और सामने की तरफ एक स्टेज बनी हुई है जिसके के ऊपर लाइटें लगी हुई है।

इस फोटो के अंदर शादी का मंडप दिखाया गया है जिसमें नीचे की तरफ हरी कलर की घास है।